इसमें की आर्टिफिशियल प्लांट्स लगे हुए दिख रहे हैं और एक छोटा सा गुड्डा टॉय यहां पर--

वहां गांव के लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस दुकान मे और भी बहोत सारा सामान हमे रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इन कोल्ड ड्रिंक की बोतल में हमें स्प्राइट और--

यहाँ पर एक व्यक्ति रिसेप्शन एरिया में बैठा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में हमें ए कुछ बच्चे अ स्टेज पर एक डांस परफॉर्मेंस दिखाते हुए--

इस इमेज में हम एक मेडिकल स्टोर दिख रहा है जिसमें की--

अ अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स रखे हुए नज़र आ रहे हैं जैसे कि लोशन्स की बॉटल भी यहाँ पर दिखाई दे रही है।

अ बहोत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

यहां पर हमें गैरेज में ब्लू कलर की कार रिपेयर होते हुए या पॉलिश होते हुए दिखाई दे रही है।

लगभग रखी हुई है दुकानो पर और यहां पर बहोत सारे दुकानदार मछली बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जो की सर्विसिंग के लिए यहां पर लाई गई है।

और इस ग्राउंड के आगे हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी दिखाई दे रही हैं।

बहोत सारी टेबल कुर्सियां रखी हुई दिख रही है।

इस शॉप के ऊपर हमें एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है जिस पे कि जय टैटू लिखा हुआ है।

अ वॉलपेपर लगा हुआ बताया गया है इस वॉलपेपर में कार्टून फॉर्म में आइसक्रीम कैंडीज और --

यहां पर हमें कुछ व्यक्ति टेबल कुर्सी पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं।